ये एक बेंचें रखी हैं। चार-पांच लोहे की बेंचें रखली हैं। नीचे फरस है पीला कलर का। दीवार है। विंडो है और सामने शीशे का दरवाजा है।

यह अंगूर है अंगूर बहुत सारे हैं काले रंग के अंगूर हैं वो एक तरह से कई लच्छो मे कई लच्छे होंगे।

और पिलरों पे खड़ी है। चारों तरफ पाड़ बल्ली हैं। नीचे बाइक खड़ी है। मेडिकल का सामान रखा है। चारों तरफ से --

दिख रहे हैं ये एक कई कलर में है चितले कलर में है एक गाड़ी खड़ी है ढकी हुई शायद उसमें तेमद रखा हुआ है एक --

ये एक साउथ का मंदिर लग रहा है इसमें कई तरह के देवी-देवताओ तस्वीरें हैं। फूलो से सजी है। पर्दा दिख रहा है। एक लेडीज और एक बच्चा खड़ा है।

यह कर पार्किंग है यह कई तरह की गाड़ियां खड़ी है यह कई कंपनियों की गाड़ियां है इसमें।

बिल्डिंग एक बिल्डिंग पे दो टैंक रखे हुए हैं। पानी का प्याउ पे एक आदमी खड़ा है एक खंभा दिख रहा है।

एक बुजुर्ग आदमी कार धो रहा है सर्फ के पानी से कार धो रहा है। सामने कुछ सामान दिख रहा है एक लड़का उसके पास बैठा हुआ है।